नोटिस बोर्ड भी है यहां पे रेड कलर का भी नोटिस बोर्ड है यहां पे--

किसी की ट्रक खड़ी है और येलो कलर की भी है ब्राउन कलर की भी है।

लोग आते जाते हैं यहां पे सुखे और ग्रीन कलर के पेड़ भी हैं।

मटके हुए रखे हैं पानी वाले और यहां पे कुछ लोग खड़े हैं और यहां पे हल्का सा बैनर लगाया रेड कलर का और यहां पे हरी नीली पीली झंडियां लगी हैं।

ताजमहल जैसा कुछ बना हुआ है और उसपे नीचे रेड चादर सी है।

काफी सारे और यहां पे ब्राउन कलर की दीवालें हैं हल्की ब्राउन कलर की पुरानी सी।

यहां पर एक टेबल है और उसके ऊपर चार ग्लास रखें हैं एक गुलदस्ता है।

टेबल्स है जिनका कलर ब्लैक एंड येलो हल्का सा है और--

जिनका जिनकी खिड़कियां ब्राउन कलर की हल्की ब्राउन कलर हैं और यहां पे पेड़ भी लगे हुए हैं।

और एक और पास में घर है हल्का सा डार्क येलो में।

लोकल किसी से लगे हैं और यहां पर एक ब्लू हल्का ब्लू कलर का डस्टबिन नए हैं।

यहां पे एक जाल भी रखा है और यहां पे एक ईंट भी है।

यहां पे फूल वाले पेड़ पर लगे हुए हैं और यहां पे--

यहां कुछ लोग वीडियो बना रहे है कुछ लोग शादी का आनंद ले रहे हैं और यहां पे।

और यहां पे येलो कलर का शटर है और यहां पे येलो कलर का बैनर भी है।

एक बस स्टैंड है जहां पे बारह तेरह बस खड़ी है और यहां पे--

यहां पे एक झरना है पानी वाला और यहां पे--

सिल्वर कलर की फोर व्हीलर है और यहां पर एक रेड कलर की चेयर है और यहां पे एक पी_सी कंप्यूटर रखा हुआ है यहां पे --

व्हाइट कलर की दीवाल है हल्की सी यलो और ग्रे कल--

ब्राउन कलर की भी एक दीवार ब्राउन कलर की दीवाल दीवाल है।

और यहां पे ब्लू कलर की भी दीवार है यहां पे कुछ टायर भी लगे हैं ब्लैक है ब्राउन --

यहां पे कुछ लोग हैं जो की सेलिब्रेशन कर रहे हैं कुछ चीज का और यहां पे वाइट कलर के पर्दे भी है।